वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इसके पास में हमें टावर भी दिखाई दे रहा है।

जो की यहाँ सारा सामान भी रखा हुआ है पूजा का और बहोत सारे भगवान भी दिखाई दे रहे है हमें--

रंग-बिरंगी कलर से डेकोरेशन किया हुआ है।

जैसा की हमें यह दिखाई दे रहा है की यह एक आदमी है और ये हमें प्रेस करते--

जैसा की यहाँ दिख रहा है की हमें इ-इ गद्दे--

और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए है जो की यहाँ व्हाइट कलर --

की यह एक रूम है और इस रूम में हमें--

और इस बिल्डिंग के स पास में हमें मेंन गेट --

जैसा की हमें यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक मनोज फ्रूट फंडार भंडार है।

और यहाँ हमें एक ठेला दिखाई दे रहा है और इसकी दुकान भी है जहाँ पर हमें बोहोत सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे है।

कपड़े की शॉप है और यहाँ पर हमें हर कलर के कप--

जैसा की हमें यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक रोड है और इस रोड के--